का इंतजार कर रही है वे उ उसी पूजन में शामिल होने के लिए आई हैं एवं बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

इसमे बहुत सारी लाइटे भी दिख रही है जो कि देखने मे बेहद ही सुंदर दिख रहा है यह अपना डास कर रहे है।

हमे हमे कुछ लोग दिख रहे है जो कि फोटो खिंचवा रहे है जिनमे दो महिला एवं तीन पुरुष शामिल है। एक एक व्यक्ति ने अपने आंखो पर चश्मा लगाया हुआ है एवं--

यह कोई वेडिंग डेकोरेशन है जिसमें बहुत सारे फूलों एवं कुछ प्लास्टिक फूलों पर्दो इत्यादि का प्रयोग किया गया।

इसमें हमें एक डेकोरेशन सिस्टम दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

गुब्बारों से बना पुतला भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बड़े-बड़े मेडल भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो गुब्बारें हैं।

एक व्यक्ति बैठ कर इसमें फोटो खिंचवा रहा है एवं कई कई लोग अपन अपना-अपना काम कर रहें हैं। इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ दरवाजें एवं लाइट भी दिखाई दे रहीं हैं।

एक व्यक्ति ने बांस की लकड़ी को पकड़ा हुआ है एवं कुछ अन्य लोग भी दिख रहे है जो कि अपना काम कर रहे है।